जिसमें कि मछलियां हैं और नीचे एक पत्थल है और मछली रखी हुई है।

दो गटरे है वहां पे एक आदमी खड़ा है।

वो शायद देख रहा है सारा चीज।

ये एक दुकान है यहां पे फ्रिज है फ्रिज में स्प्राइट है।

और दरवाजे हैं ऑरेंज कलर के।

और यहां पे बहोत सारी दवाइयां--

क्रीम बहोत सारी चीजें यहां पे रखी हुई हैं।

यह जो है एक मकान है और यहां पे--

पानी दे रहा है पेड़ पौधों को फूलों को पाइप से--